हाल में मैट बिछाया हुआ है मैट ब्लैक कलर का है।

यहां पे चार ठो लड़की लोग हैं जो डांस कर रही हैं सब अलग अलग कपड़े पहने हुए हैं।

सड़क के बीच मे एक बड़ा सा रेलिंग बनाया हुआ है।

बगल में एक ड्राम रखा हुआ है जो सीमेंट से भरा हुआ है।

बीच मे बहुत सारी महिला लोग हैं जो व्हाइट कलर का साड़ी पहने हुई हैं।

नीचे एक टायर खुला हुआ है एक डिब्बा रखा हुआ है और बहुत सारे नट बोल्ट रखे हुए हैं।

कुर्सी पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और बहुत सारे कॉपी किताब भी है।

आता को पेंट किया गया है ब्लू कलर से और उसके ऊपर जाली से घेरा हुआ है।

यहां पर स्विमिंग पूल का दृश्य दिख रहा है।

पोल गाढ़ा हुआ है बड़ा सा व्हाइट कलर का और कुछ पाइपें रखी हुई हैं।

दो टायर लगाया हुआ है टायर ब्लैक कलर का है।

बीच में क्रिकेट खेलने का जगह बनाया हुआ है।

बड़ा सा लाइनिंग घिचा हुआ है चौक से।

आसमान में धूप छाया है सूरज भगवान दिख रहे हैं।

बीच में एक आयरन्स लगाया हुआ है।

नीचे कुछ झूला भी लगाया हुआ है छोटा सा--

आसमान में पूरा धूप छाया हुआ है।

अंदर में बहुत सारे बक्से रखे हुए हैं।

पीछे उसका पूरा रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है फूल का कलर व्हाइट है और पिक है हल्का--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

बगल में करकट से छाया हुआ है।

काउंटर पे कंप्यूटर रखा हुआ है लैपटॉप रखा हुआ है।

उसपे एक महिला का दृश्य दिख रहा है।

टेबल ब्लैक कलर का है कुर्सी लगाया हुआ है।

हैगर में बहुत सारे बेल्ट टांगे हुए हैं रंग बिरंगे का कुछ ऑरेंज कलर का है कुछ रेड कलर का कुछ ब्लू कलर का है।

यहां पे बड़ा सा प्लेग्राउंड का दृश्य दिख रहा है।

ऊपर कुछ कुछ टेंट भी लगाया हुआ है जो पिंक कलर का है।